तस्वीर में मुझे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रही है।

और मुझे दो महिला भी दिखाई दे रही है।

और सीढ़ीओ पर एक लाल रंग का कारपेट बिछाया हुआ है।

लोगों के बीच कई सारे पिरामिड्स भी बनें हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन पिरामिड्स पर कई सारे फल्स भी रखे हुए हैं।

नाव पर एक लोहे की चैन भी लगा हुआ है।

लाल रंग का दीवार भी दिख रहा है।

और टेबल पर कई सारे सामान भी रखे हुए दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान के अंदर कई सारे सोफा दिखाई दे रही है।

और मुझे एक ट्राली भी दिखाई दे रही है।

दीवारों पर सुंदर सा डिजाइन और सजावट किया हुआ है।

मुझे कई सारे बड़े छोटे ट्यूबलाइट्स भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक जलती हुई आग भी दिख रहा है।

और बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रही हैं।

उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपर योनेक्स लिखा हुआ है।

एक झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग दिखाई दे रही है और बाहर पर चार आदमी भी दिख रहा है।

और मंदिर के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रही है।